और एक क्या सा जगह दिख रहा है देख सकते है आपलोग यहाँ पर बहुत ही खतरनाक इसका जो घर है ।

एक कितना अच्छा हवा वगैरा लाइट वगैरा यहाँ पे दी हुई है और बहुत ही खुली जगह है ।

स यह ऑस्ट्रे ललिया ऑस्ट्रेलिया एक्सपर्ट यहाँ पर

फूल मालाओ से इन्हें सजाया गया और यहाँ पर देख सकते है इधर एक आदमी यहाँ पर --

और यहाँ पर देख सकते हैं कितने अम्म सब्जी वगैरह यहाँ पर दिख रहे हैं और बहुत सारे सब्जी फल वगैरा जैसे हो गया खाने का समान हो गया टेंट लगाकर यहाँ पर |

और बहुत ही यहाँ पर ट्रक वगैरा यहाँ पर नहीं दिखाई द देखीए वहां पर पार्किंग लगी हुई है ट्रक वगैरा और वैसे तो बहुत ही बड़ी यहां पर |